ये एक ट्रेन है और ट्रेन के बाहर ट्रेन खड़ी हुयी है और उसके बाहर एक लोहे बिजली का खम्बा भी लगा हुवा है खम्बे भी लगे हुए हैं और भी खम्बे लगे हुए हैं।

अंकल के पास एक और प्लास्टिक बिछा हुआ है और उसके ऊपर एक कैची भी रखी हुई है और एक पत्थर रखा हुआ है उस पे ये कैची रखी हुई है और बोहोत सारी मछलियां जमीन --

और एक अ-अ एक लड़की सेल्फी ले रही है और पीछे एक दीवार है। व्हाइट कलर की दीवार है। कुछ लोग खड़े हुए हैं। ओ ब्लैक कलर का गेट भी है और यहाँ पे पिंक कलर के परदे भी डले हुए हैं। ओ पिंक कलर यहाँ पे --

के पीछे ये दीवार पे एक स्टार का पो फोटो लगा हुआ है स्टार बना हुआ है एक कुण्डी रखी हुई है। उसमें हरे हरे पत्ते भी दिख रहे हैं। रेड कलर की कुंडी है और लड़का खड़ा हुआ है। उसको चश्मा लगा हुआ --